है जो की काला कलर का दिखाई दे रहा है उसका कपड़ा--

मार्शल आर्ट का प्रेक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों के कमर में येलो और कुछ कुछ बच्चों के कमर में ब्लू ब्लैक बेल्ट भी है।

लोग सफेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

नीचे में कारपेट का कलर रंग बिरंगा कलर है।

पानी का कलर पीला है यहां पे चारों ओर हरियाली की हरियाली है साइड में एक दीवाल है।

यहां पे तलब के बीच में कुछ घास भी जमा हुआ है।

साइड में बहोत सारे लोग बैठकर बातें कर रहे हैं।

नीचे में ईंट के मदद से लंबा सा रोड भी बनाया हुआ--

ये एक कोयला खदान का दृश्य है जहां पे बहोत सारे लोग काम कर रहे हैं।

यहां पर हर एक लोग पीला कलर का हेलमेट पहने हुए हैं जो कंस्ट्रक्शन हेलमेट है।

और वो इंटा एक खाली से मैदान में रखा हुआ ऊपर से दो तार भी गुजरते हैं और साइड में बहुत सारे तार भी गुजर।

एक साइड ग्रीन कलर है और सामने में ऑरेंज कलर है।

यहां पे ढेर सारे वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक आदमी जो कि सफेद कलर का इमामी टोपी और कुर्ता पहन कर खड़ा है।

यह एक रूम का दृश्य जहां पर दो बेड है और एक अलमारी है।

यहां पे बोर्ड के बगल में कुछ टावल भी लटकाए हुए हैं।

यहां सभी स्टूडेंट एक बेंच पर वर्क कर रहे हैं।

में एक ब्लू कलर का सीढ़ी भी जाता दिखाई दे रहा है सामने में ढेर सारा लाइट भी लगा हुआ है।

उसके बगल में भी येलो कलर के कंटेनर रखे हुए हैं।

सामने में एक येलो कलर का बिल्डिंग है उसके बगल में एक बहुत ही विशाल सा सफेद कलर का बिल्डिंग ।

एक डाक वाला पेटी भी रखा हुआ है जिसके पीछे में एक ब्लू कलर की एक्टिवा भी है।

वहां उधर ढेर सारे बाइक भी रखे हुए हैं इसके ऊपर बि-बिल्डिंग में एयर कंडीशनर भी है।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

यह एक केक शॉप का दृश्य है जिसके अंदर में ढेर सारा केक और ढेर सारा कुकीज रखा हुआ है।

इसको पूरे शीशे से बनाया गया है यहां पे साइड में भी दिवाल में कुछ रखा हुआ--

यहां पे ढेर सारा क्रेट भी रखा हुआ है यहां पे पीछे में भी एक जाली बनाया हुआ है।

यह एक साइकल दुकान का दृश्य है जहां पे ढेर सारा साइकल रखा हुआ है।